दीवार में बहुत सारा फोटो फ्रेम लुक है।

यहाँ मे एक रूम है जिसमें तीन येलो चेयर रखा हुआ है।

राइट साइड में शीशा ग्लास का ऊपर में दो टायर रखा हुआ है।

करने के लिए ईंटा से बनाया हुआ है।

आगे में सीमेन भी गिरा के है।

गोल्डन कलर का स्टील प्लेट रखा हुआ है।

इसमें से दो औरत व्हील चेयर में बैठा हुआ है।

साइड में एक कार्गो का भी है।

में एक चेयर दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड और वाइट है।

और उसका ऊपर में एक सी_सी_टी_वी भी लगा हुआ है।

जो मिट्टी में ग्रास लोग छोटा छोटा भी निकल के है।

सोफा लुक भी है जो कि ब्लू कलर का है।

इसमें लाइट लोग भी लगाके हैं।

दीवार के लिए बंबू से भी बना गया है।

और कागे का फोटो है। इसका ऊपर में डायमंड टेलर भी लिखा हुआ है।

यहां में बहुत सारा आदमी लोग वेटिंग चेयर में बैठा हुआ है।

उसका आगे में घास लोग भी लगा के है।

और साइड में एक फ्लक्स भी है।

और केनवुड बैंबू से बनाया हुआ चेयर लोग भी बहुत सारा रखा हुआ है।

ऊपर में लोटस लोटस का फूल भी रखाया हुआ है।

और एक मूवेबल टेबल भी रखे है।

रेन पॉप्सन गार्डन अंब्रेला लगाके--